c और c ++ में scope of variables पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
scope of variables क्या है
global global variable क्या है
local local variable क्या है
कुछ उदाहरण
हम कुछ सामान्य errors और उनके समाधानों को भी देखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं
ubuntu operating system version 1104 gcc और g ++ compiler version 461 का प्रयोग कर रहा हूँ
scope of variables के परिचय के साथ शुरू करते हैं
यह code का क्षेत्र है जिसमें variable को ऐक्सेस किया जा सकता है
इसके प्रकार और declaration घोषणा के स्थान के अनुसार यह दो श्रेणियों में विभाजित है
global variable और
local variable
अब हम एक उदाहरण देखेंगे
मैंने editor में पहले से ही program टाइप किया है
इसे खोलें
ध्यान दें कि हमारा file scope c है
अब मैं code समझाता हूँ
यह हमारी header file है
यहाँ हमने दो global variables a और b घोषित किये हैं
और हमने उन्हें values के रूप में 5 और 2 निर्दिष्ट करके initialize किया है
global variable आपके program में सभी functions के लिए उपलब्ध है
ये main functions के ऊपर किसी भी functions के बाहर घोषित हैं
इनमें global scope है
यहाँ हमने add function बिना arguments के घोषित किया
यहाँ sum एक local variable है यह add function के अंदर घोषित है
local variable केवल उन function के लिए उपलब्ध है जिसमें यह घोषित है
ये variables block के अंदर घोषित हैं
इनमें local scope हैं
तो a और b का योग sum variable में संचित होगा यहाँ sum sum print करेंगे
यह हमारा main function है
add function कॉल होता है और फिर निष्पादित होता है
और यह हमारा return statement है
अब save पर click करें
program को निष्पादित करें
कृपया अपने keyboard पर एक साथ ctrl alt और t कीज़ दबाकर terminal window खोलें
कंपाइल करने के लिए टाइप करें
gcc space scopec space hyphen o space sco और एंटर दबाएँ
निष्पादित करने के लिए type करें/sco enter दबाएँ
output निम्न प्रकार प्रदर्शित होता है
sum of a and b is 7
अब देखते हैं कि इसी program को c ++ में कैसे निष्पादित करें
अपने program पर वापस आएँ पहले अपने keyboard पर एक साथ shift ctrl और s की दबाएँ
अब extension cpp के साथ file को सेव करें और save पर click करें
header file को iostream में बदलें
अब using statement को सम्मिलित करें और save पर click करें
global variable और local variable की घोषणा c ++ में समान है
अतः कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है
अब printf statement cout statement को में बदलें
format specifier और \n डिलीट करें
अब comma डिलीट करें
दो opening angle brackets type करें
closing bracket डिलीट करें फिर से दो opening angle brackets type करें
और double quotes में backslash n type करें double save पर click करें
program को निष्पादित करें
terminal पर वापस आएँ
कंपाइल करने के लिए type करें g ++ space scope dot cpp spaceo space sco1
यहाँ हमारे पास/sco1 है क्योंकि हम scope c file के लिए output parameter sco को overwrite नहीं करना चाहते हैं
अब enter दबाएँ
निष्पादित करने के लिए type करें/sco1 और enter दबाएँ
output इस प्रकार दिखता है sum of a and b is 7
हम देख सकते हैं कि यह हमारे c कोड के समान है अब हम कुछ सामान्य एरर्स देखेंगे जो आ सकती हैं
अपने program पर वापस आएँ मानिए कि यहाँ मैं variable a फिर से घोषित करूंगा
type करें int a और semicolon
save पर click करें हमने main function के ऊपर और add function के बाद variable a घोषित किया
देखते हैं क्या होता है
अपने terminal पर वापस आएँ
अब पहले की तरह compile करें
come errors दिखती हैं redefinition of int a int a previously defined here अपने program पर वापस आएँ
a एक global variable है
इसमें global scope है
हम दो बार variable घोषित नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह पहले से globally घोषित है
हम केवल variable a को local variable के रूप में घोषित कर सकते हैं
error fix करें
इसे डिलीट करें
save पर click करें
फिर से निष्पादित करें अपने terminal पर वापस आएँ
अब पहले की तरह compile और निष्पादित करें
हाँ यह कार्य कर रहा है
इसी के साथ हम इस tutorial की समाप्ति पर आ गये हैं
संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा
scope of variable
global variable जैसे: int a = 5 &
और local variable जैसे: int sum
नियतकार्य के रूप में
दो संख्याओं की भिन्नता को print करने के लिए एक program लिखें
निम्न link पर उपलब्ध video देखे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
spoken tutorial project team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
यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ
धन्यवाद